एक रेस्टोरेंट है जिसमें काउंटर में बहुत सरे रंग-बिरंगे केक रखे हुए है।

बीच में कुर्सियाँ भी रखी हुई है। छत पर बल्ब जल रहें हैं और स्क्रीन लगी हुई है।

शेर बैठा हुआ है शेर किसी को देख रहा है शेर पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ है।

बीच में एक मेज रखी हुई है साइडों में दो-दो कर के चार कुर्सी लगी हुई है बीच में समान रखा है।

पहाड़ो पर ऊपर की तरफ से एक झरना गिर रहा है झरने के चारो तरफ एक सुन्दर नजारा जो जंगल का है।

पार्क चारो तरफ से पेड़ों से भरा हुआ है हरे रंग की घास है।

एक क्लास मे बहुत सारे बच्चे रखे बैठे हुए है सफेद रंग लगा हुआ है।